मुख द्वार भी गेट से बंद कर रहे है और उपर देखे तो आकाश भी है।

खड़ी है और अंदर देखे तो एक व्यक्ति है और पहाड़ो पे है बाजु मे आउट एक अकादमी स्वछता कि है और उपर देखे तो करंट वायर भी है।